और इसके दरवाजे का रंग भी भूरा है।

तीनो ने रंग के कपडे पहने हुए हैं ।

और ऊपर आसमान का रंग काला है और इसके सामने एक अमारात है.

सड़क पर एक कार खड़ी है जिसका रंग सफेद है।

इसमें बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके कपड़ों का रंग और --